चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ हमे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ब्लू कलर का वो बेंच है और उस बेंच पे हम देख पा रहे हैं --

इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाॅं पर हमें एक हॉल सा देखने को मिल रहा है और पूरा वाइट कलर का है वो हॉल और हम देख पा रहे हैं --

यहाॅं में अ कुछ लोग खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं और हमें सामने एक अ पीले रंग का बो दिख रहा है ऊपर हम दो पिलर और देख पा रहे --

इसमें हम देख पा रहे हैं जहाॅं हमें एक व्हाइट कलर की कार दिख रही है। जिसमें उसका बोनट खोलकर रखा है।

यहाॅं हम देख पा रहे हैं एक आदमी को जिसने अपने हाथों से में अंगूठियाॅं पहनी हुई हैं तीन चार और दूसरे हाथ में भी एक अँगूठी है।